ये तस्वीर मे बहुत सारा पाणी वगैरा भरा हुआ है और कुछ डोंगे भी है और कुछ टायर भी लगा हुआ है।

बहुत सारा पेड़-पौधे भी और कुछ कांच की खिड़की भी है।

ये तस्वीर एक मंदिर का है जिसमे गणेश मंदिर है।

और एक कपड़ा भी दिख रहा है और एक इंसान भी दिख रहा है और अंदर कुछ खिलौना भी दिख रहा है और बोनट खोले हुए है गाड़ी का।

और कुछ झंडा भी दिख रहा है और यहाँ का और यहाँ बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है और खुला आसमान है कुछ पत्थर वगैरा भी है।

बहुत सारा पेड़ पौधे भी है हरा भरा है नीचे कुछ घास भी है और खुला आसमान है।

और कुछ इंसान भी दिख रहा है और पंखा भी दिख रहा है और बहुत सारा लाइट भी लगा हुआ है।

यह तस्वीर एक फूल दुकान का है उसमे बहुत सारा फूल दिख रहा है जो गेंदे का भी दिख रहा है।